यहाँ मट्टी की बनी कुछ आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं।

जिसके बाहर लकड़ी का एक स्टुल रखा दिखाई दे रहा है।

यह एक गिरजा घर का चित्र दिखाई दे रहा है जिसके बाहर बड़े-बड़े बृक्ष दिखाई दे रहे हैं। .